ये एक डेम का दृश्य है जहां से डेम के शटर खुलते नजर आ रहे हैं ।

ये चित्र एक चार मंजिले इमारत का चित्र है।

ये चित्र एक खेल के मैदान का चित्र है जहाँ सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है।

इस चित्र में एक जानवर दिखाई दे रहा है एलोवेरा का पौधा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है इसकी बालकनी दिखाई दे रही है वरकक्ष दिखाई दे रहे है।